नमस्कार creating and meshing a curvedpipe geometry in salome for openfoam पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे:
इस tutorial को record करने के लिए मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऊबुंटु वर्जन 1210 और salome वर्जन 660 का उपयोग कर रही हूँ
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपके computer पर salome संस्थापित होना चाहिए यदि नहीं तो आप downloading and installing salome पर tutorial का अनुसरण कर सकते हैं
desktop पर salome icon पर क्लिक करके salome सॉफ्टवेयर खोलें
modules bar में geometry module पर click करें
और अब new पर click करें
ऊपरी menu bar में new entity पर click करें
drop down options में basic पर जाएँ और फिर 2d sketch पर जाएँ
default रूप से पहला point zero zero है apply दबाएँ y के सामने 30 type करें
और apply पर click करें अब दूसरे element पर जाएँ और arcs type करें
type को direction चुनें और direction को tangent चुनें
radius में10 minus ten और angle में 90 type करें apply दबाएँ अब element type को lines चुनें
type को direction चुनें और direction को tangent चुनें
length में 30 type करें apply और close दबाएँ
करीब से देखने के लिए मैं इसे zoom in करती हूँ
object browser में geometry tree खोलें हम sketch _ 1 देख सकते हैं
आप sketch को छिपाने के लिए check off औऱ फिर से दिखने के लिए check on कर सकते हैं
अब new entity>> blocks>> divided disk पर जाएँ
orientation को ozx चुनें औऱ radius में 1 type करें
apply and close पर click करें अब new entity>> generation>> extrusion along path पर जाएँ
geometry tree से base object में divided disk _ 1 और path object में sketch _ 1 चुनें
apply and close पर click करें हम देखते हैं कि pipe _ 1 बन गया है
अब new entity>> explode पर जाएँ main object में pipe _ 1 चुनें subshapes type drop down menu में face चुनें select subshapes पर check करें
मैं इस window को move करता हूँ स्क्रोल अप करके मैं इसे zoomइन करता हूँ मैं rotation menu पर क्लिक करके object को घुमा सकता हूँ
object को घुमाने के लिए mouse के बाएँ ओर का button दबा कर रखें और mouse को ऊपर की ओर बढायें screen पर दिखाए गए स्थान पर mouse pointer को ले जाएँ
mouse के बाएँ button को दबा कर रखें
mouse को drag करें ताकि सभी inlet faces आयताकार क्षेत्र में आ जाएँ
mouse button को छोड दें
अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी inlet faces चयनित हो गए हैं show only selected पर click करें
apply and close पर click करें हम देखते हैं कि पाँच faces geometry tree में exploded हो गए हैं
अब new entity>> group>> create पर click करें
geometry tree से main shape में pipe _ 1 चुनें
shape type में face चुनें
add geometry tree से पाँच faces चुनें इस addबटन पर क्लिक करके उन्हें जोडें group को inlet name दें
apply and close पर click करें हम देखते हैं कि inlet group बन गया है
pipe के दूसरी ओर भी समान प्रक्रिया करें और उन faces को outlet के रूप में group करें
मैंने outlet face group बनाया है अब object को mesh करने के लिए modules dropdown menu पर जाएँ mesh चुनें
अब ऊपरी menu bar में mesh>> create mesh पर click करें
geometry tree से geometry को pipe _ 1 चुनें
assign a set of hypotheses button पर click करें 3d: automatic hexahedralization पर click करें
number of segments में 12 type करें
ok पर click करें apply and close पर click करें हम mesh _ 1 को geometry tree में देखते हैं
इस पर right click करें compute पर click करें window को बंद करें
हम देखते हैं कि meshबन गया है
मैं इसे zoomin करता हूँ
मैं इस panning option द्वारा object को move कर सकता हूँ
अब हम flow दिशा में mesh को परिष्कृत करेंगे
ऐसा करने के लिए modules dropdown menu से geometry module पर वापस जाएँ
अब मुझे panning और rotation option का उपयोग करके उचित दृश्य प्राप्त करना है मैं इसे zoomout करता हूँ
new entity>> explode पर जाएँ
main object को pipe _ 1 चुनें
subshapes type में edge चुनें
select subshapes check करें
मैं window को कोने पर let जाता हूँ
अब mouse pointer को लें जैसे कि screen पर दिखाया गया है mouse के बाएँ button को दबा कर रखें
mouse को drag करें ताकि सभी outlet face edges window के अंदर आ जाएँ
mouse के बाएँ button को छोड दें चयनित edges सफेद रंग में दिख रहे हैं
hide selected पर click करें इसी तरह यहाँ 3 ओऱ face edges हैं जिन्हें हमको एक एक करके चुनने और छुपाने करने की जरूरत है
उसके बाद आप edges को केवल flow दिशा में देखेंगे मैं इसे zoomout करता हूँ object को move करें
इसी विधि का उपयोग करके इन सभी edges को चुनें और apply and close पर click करें
geometry tree में outlet के नीचे हम देखते हैं कि 24 edges exploded हो गए हैं
इन edges को group करने के लिए new entity>> group>> create पर जाएँ
shape type को edge चुनें
geometry tree से main shape को pipe _ 1 चुनें
अब इन सभी edges को चुनें और इन edges को जोडने के लिए add button पर click करें
group को flow edges name दें apply and close पर click करें
हम देखेंगे कि flowedges group बन गया है
अब modules dropdown option से mesh module में जाएँ
mesh _ 1 पर right click करें औऱ create submesh पर click करें
geometry को flowedges चुनें
algorithm में wire discretization चुनें
अब उपयुक्त hypothesis को चुनने के लिए dropdown menu के दाएँ ओर पहले button पर click करें
nb segments पर click करें
number of segments में 30 type करें
ok पर click करें apply and close पर click करें
अब mesh _ 1 पर click करें compute पर click करें refined mesh now गया है window को बंद करें
हम देखते हैं कि mesh flow दिशा में refined हो गया है
इस कार्य को सेव करने के लिए file>> save as पर जाएँ file को curvedgeometry name दें
मैं इस कार्य को desktop पर सेव कर रही हूँ save करें salome को minimize करें
हम देखते हैं कि file curvedgeometry hdf नाम से सेव हो गई है
इस tutorial में हमने सीखा:
assignment के लिएबाहरी diameter की तुलना में छोटा 6 units आंतरिक diameter वाला pipe बनाएं बेंट के कोने को बदलें
video निम्न url पर उपलब्ध है:
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है
spoken tutorial project talk to a teacher project का एक हिस्सा है यह आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा mission एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा समर्थित है इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद